यहाँ पे बहुत सारे कप रखे हुए।

लड़का है जो झंडा फेक रहा हैं और यहाँ पे चार लड़के ड्रेस पहने हुए हैं पीला सफ़ेद और एक लड़का दो लड़का के हाथो में --

चिड़िया घर में बहोत से जानवर रखते हैं पक्षी रखते हैं और साँप भी ।